गाड़ी का सीसा बल्ब है और चक्का है बहुत सारा चीज देखने को मिल रहा है ।

अब फूल-तूल से गाछ-ताछ है ऊपर से फूल से सजाया गया है अच्छा लग रहा है देखने मे।

तो बहुत अच्छा बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में तो हम देखते हुए एकदम पानी मे --

एस.बी.आई. बैंक के विकास शाखा अररिया।

बहुत सारा चीज देखने के लिए मिल रहा है पहाड़ तहाड़ है।

अंदर डिब्बा मे रखा हुआ बिस्कुट -तिस्कुट है भुजया-तुज्या बिस्कुट आपको टीना दिया गया हैअच्छा लग रहा है देखने में --

तो हमको अच्छा लग रहा है उ सब चीज़ देखने मे बहुत ही सुन्दर बहुत ही खूबसूरत तो हम देख रहे हैअच्छा ही लग रहा है ।

आदमी सब बैठा हुआ है चर्च घर हैएगो लेडीज स्पीकर लेके ठरा बोल रहा है आगे दू चार आदमी ठड़ा है ।

तो हम देख भी रहे है अच्छा लग रहा है हमको देखने में बहुत ही खूबसूरत बहुत ही शानदार तो आप लोग भी देखना जो चीज देखने में --

न्यू ताज ये सीन अच्छा लग रहा है आदमी सब है बहुत सारा ड्रेसिंग ट्रेसिंग है बैठने वाला चेयर तेयर है।